ये यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है और यहाँ पे एक टेबल और कुर्सिया है वो भी ब्लैक कलर की है।

और सामने टेबल पर वाटर की बॉटल और फोन रखा हुआ है।

ये यहाँ पे एक ऑटो है और दो आदमी खड़े है एक आदमी ने --

पर्पल कलर की शर्ट लगाई है और पैंट लगा है ब्लैक अ --

यहाँ पे ए ए स एक मास्क पहना हुआ है ।

और यहाँ पे दूसरा आदमी है उसने ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई है और यहाँ पे उसके --

यह एक मकान है और यहाँ पे कुछ --

बाहर अह पार्ट बनाया गया है उसपे टाइल लगे हुए हैं।

और ऊपर तार जा रही है और आसमान पर बादल छए हुए है।

और बाहर एक बाइक है जो कि ब्लैक कलर की है और अंदर एक--

यूनिफॉर्म पे है और इनको रेड रिबन लगाया गया है और इनके बालों का रंग--

ये एक मॉल है और यहां पे बहुत सारी खाने की चीज है।

वनिटा कोका-कोला पेप्सी फन्टा और--

अह अ ड्यू और अ भी कुछ जूसेस रखे हुए हैं ।

यहाँ पे बो मैंगो और पाइनएप्पल की ज्यूसेस भी रखे हुए और यहाँ पे टी --

यहाँ पे एक औरत है और यह किसी दुकान में बैठी हुई है इसने लाल कलर की बनियान और स--

पीले कलर की सलवार और दुपट्टा पहना हुआ है उसने ब्लू कलर की फ्रॉक--

कान में बाली है उसके बालों का रंग काला है और एक अ--

ये सामने दो बाइकें रखी गई हैं और इनका रंग--

ब्लैक है और यहाँ पीछे एक बोर्ड है और यहाँ टेबल पे भी एक बोर्ड रखा हुआ है और वहाँ एक --

ये कमरा है और यहाँ पे कुछ बोर्ड्स ऊपर लगे हुए हैं वो अ फ्रेम्स है और एक वॉल क्लॉक है।

ये जो शीट है वो लाल कलर का है और यहाँ पे --

उसके बाद भी एक आदमी खड़ा है उसने --

ये एक औरत है और ये पौधों को पानी दे रही है और उसके हाथ में वाटर पाइप है और --

और इसने स्कार्फ पहनी हुई है और उसने मासक लगाई है।

अ ब्लैक कलर के शूज है उसके सर पे काले बाल है।

ये एक मैदान है और यहाँ पर ये एक आदमी चल रहा है सामने लाइट लगी हुई है और यहाँ से बहुत सारे लोग हैं।

ग्रीन ग्रास लगाई गई है और एक बड़ी स्ट्रीट लाइट --

लगाई गई है और उसकी जो रिफ्लेक्ट ग्राउंड पे कर रही है.

पाइप जैसी है और यहां पे कुछ प्लास्टिक के--

चीज है और लकड़ी है और एक पेट है और--

ब्राउन कलर की बनियान लगाई है और ब्ल्यू पेंट है और उसके सर के बाल काले हैं।

ये एक गाड़ी ये चल रही है और ये ग्रे कलर की गाड़ी है और--

दुकान है और दुकान में बहुत सारी चीजें लगा के हैं और यहां से तार जा रही है और सामने--

हिमालय की बोर्ड लगी हुई है और यहां पे--

कुछ पेड़ है और वो कुछ पौधे हैं और वो गामलों में लगे हैं और एक और शटर है जो ब्लू कलर की है।

टेबल है टेबल पर ग्लास है और सोफा है सोफे ब्लैक कलर के है और एक शीशा है वहां से एक आदमी नजर आ रहा है।

टेबल पे शीट सीजर कॉपी --

और भी कुछ चीजें है और यहां पे गोंद रखा हुआ है.

और एक लड़की ने चक शर्ट पहनी हुई है.

ये कुछ लोग यहां पर बैठे हुए हैं और खुर्ची है और टेबल है.

और सामने कोई फोटो लगी हुई है दीवार पे--

अ ब्लू और पिंक कलर की यहां पे दो आदमी शर्ट में--

ये एक आदमी है और ये भी यहां पे जिम कर रहा है इसके--

हम्म हम्म टी-शर्ट पहने और ब्राउन ट्राउजर पहना है.

दावे के बीच में और यहां पे एक बावल है उसमें चटनी है और एक प्लेट है और--

यहां पे दीवार ओ ओ पे कुछ और भी चीजें है और यहां पे बोतल है.

ऊपर भी कुछ म लड्डू और मिठाइयां रखी हुई है.

एक आ औरत है उसके हाथ में कुछ चिट्ठी है और उसने--

ये यहां पे पर्दे हैं और एक लड़का है और ये पर्दे दिखा रहा है पर्दे मुख्तलिफ किस्म के है ऊपर लाइटें जल रही है।

ब्लैक कलर की वार्मर पहनी हुई है और इसके सर पे काला बाल है और यहां पे--

और यहां पे बहुत सारी चीजें हैं और यहां पे एक आदमी खड़ा है.

पैरों में जूते लगा के रखे और उसके बल काले है.

कल्प में सजाई गई है ऊपर लाइटें लगी हुई है और यहां पे--

ये एक वेटिंग रूम है और यहां पे एक सोफा है ब्लू कलर का उसमें एक लड़का बैठा हुआ है उसके हाथ में फोन है और --

टेबल पर बहुत सारा खाना है दाल है प्लेट है चम्मच है ग्लास है से टिशु है।

अ दही पकौड़ा है और ग्लासेस है और इन्होंने--

इनके सर के बाल काले हैं और इन्होंने ब्लैक जैकेट्स और एकने रेड जैकेट पे--

और ग्रे कलर की पैंट पहनी हुई है और उसने--

चप्पल पहनी रखी है उसके बालों का रंग काला है एक औरत जा रही है उसने--

ये एक बर्बर शॉप है और यहां पे ये इसकी दाढ़ी बना रहा है और इसने इसके चेस्ट पे--

ये सामने एक मकान नजर आ रहा है इसको ग्रीन कलर किया गया है और बाहर बहुत सारी--

और उसमें कुछ भरा हुआ कुछ टॉफी जैसा है--

और यहां पर बाकी चीजें भी है और एक टेबल है यहां पर उस पे कुछ--